और यहाँ पर सभी प्रकार के फुल मिल जाते है और सभी प्रकार के फुल का गजरा भी मिल जाता है।

और बहोत ही अच्छे लग रहे हैं और बहोत ही स्वादिस्ट लग रहे हैं। यह एक केरेट में रखे हुऐ हैं और जिसमें अख़बार भी बिछा हुआ है। यह बहोत ही महगे बिकते हैं।